रखे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर जो कुछ अंगूर दिख रहे हैं अंगूर जो हैं वो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अलग-अलग तरह के फ्रूट --

इमेज में गाय दिख रही है गाय कुछ ब्लैक वाइट कलर मे दिख रही है और इसके गले कुछ रस्सी बंधी हुई दिख रही है रस्सी का कलर जो है वो कुछ मेहंदी कलर का दिख रहा है और यहाँ पे दीवाल दिख रही है जिसका कुछ --

कुछ रेड कलर में दिख रहे हैं काफी अलग-अलग कलर में पेंटिंग की हुई दिख रही है कुछ व्हाइट ब्लैक कलर मे पेंटिंग किया हुआ दिख रहा है और यहाँ पर काफ़ी तरह-तरह के रखे हुए दिख रहे हैं वगैरा दिख रहे हैं काफी जगह जो है टंगे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आस-पास में भी --

इमेज में बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग का पेंटिंग कलर व्हाइट कलर मे दिख रहा है। काफ़ी सारी शटर लग रही दिख रही है कुछ शटर जो व्हाइट कलर कि पेंटिंग की दिख रही है कुछ यहाँ पर स्लेटी कलर मे पेंटिंग किया हुआ दिख रहा है।

कुछ बोतले रखी हुई दिख रही है पानी की जो व्हाइट कलर मे दिख रही है कुछ ऑरेंज कलर की दिख रही है और यहाँ पर काफ़ी सारी चेयर वगैरह दिख रही है। कुछ यहाँ पर चेयर वगैरह जो है वो कुछ ब्लू कलर में दिख रही है और यहाँ --

सामने एक जग रखा हुआ दिख रहा है जो कुछ ब्लैक दिख रहा है और कुछ स्टील का दिख रहा है। आस-पास में यहाँ पर बिल्डिंग दिख रहा है उसका पेंटिंग कलर जो है व्हाइट कलर में दिख रहा है कुछ पर ग्रीन --

खंबे वगैरह रखे हुए दिख रहे है और यहाँ पर काफ़ी बड़े-बड़े पत्थर दिख रहे हैं पत्थर कुछ ब्लैक कलर मे दिख रहे हैं और यहाँ पर आसमान दिख रहा है।

ऊपर काफी सारे बिल्डिंगे दिख रही हैं और कुछ बिल्डिंगें वाइट कलर में दिख रही हैं और आसमान दिख रहा है। आसमान के आस-पास में यहाँ पर जो कुछ पेड़ वगेरा दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ पेंटिंग किये हुआ --